यह एक घर है इस घर के दीवार पर बहुत सारे पत्थर की मूर्त जैसा बनाया गया है।

यहाँ पर बहुत से आदमी आकर सामान खरीद --